और इसमें पेड़ गमले सहित हैं और बॉल डली हुई है जो यहां पर पानी लगाने के लिए डाली गई है और कुछ खेत दिख रहे हैं।

तो उस मंदिर के दर्सन के लिए आए हुए हैं और कुछ लाइटें भी चल रही --